यहां पर बहुत सारे बैठने को सत्तार का बना हुआ है। यहां के वोट की बनी पी बोतले भी रखी हुई है। यहां पर बहुत सारे खंबे हैं। पेड़ पौधे हैं। यहां नदी में यहां पर बहुत सारे बटक है।

यहां एक साइड बहुत सारे लकड़ी के बने हुए सोफे यहां पर टेबल है। जो की बहुत सारे आदमी अंकल बैठे हुए हैं

भासा गलत है ये पूरा का पूरा

यहा पे हीरो हौंडा की बाइक की दुकान हे यहा एक साइड बोहोत सारी बाइक हे जेसे स्कूटी हे जेसे पर्पल ग्रे वाइट

यहा एक बोहोत सारा बड़ा और रूम हे यहा पे बोहोत सारे--

यहा एक बहुत बड़ा होटल हे यहा होटेल पे लाइटस ल्ग्जी लगी हुई हे जो की ब्लू कलर की है